नीचे की ओर चेयर भी नजर आ रहे हैं।

बाहर पर एक स्कूटी और बाइक लगे हुए नजर आ रहे हैं।

नीचे की ओर ईंट का टाइल्स भी लगे हुए हैं।

इसमें काफ़ी सारे सामान रखे हुए नज़र आ रहे हैं।

अंदर के ओर काफी सारे सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर नीचे की ओर मिट्टी नजर आ रही।

सामने की ओर एक घर दिखाई दे रही है।

यहां पे काफी सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं जिनके कपड़े की कलर अनेक हैं।